एक पाद यंत्र छे एकरा में बहुत आदमी छे और तबला छे किस्यु छे और माइक लागल छे। आदमी सब यहाँ पर कीर्तन-भजन --

इ मार्केट छै मार्केट में सब समान मिले छै साग सब्जी फल और आदमी सब सब खड़े दए छै।

ये एक सरकारी भवन छे जे की बहुत बड़ा छेत्र्फल में फैलल छे बहुत बड़ा छेत्र्फहल में बनल छे एकरा में सरकारी काम काज होइ छे।

इ गौतम बुद्ध के मूर्ति छै।

ई एक पुल छै एकरा में पानी के बहाव बहेरल भाय रहल छै और आदमी के ऊपर आव जाई में ही सुविधा छै--

यह एक शादी समरोह की जगह छे और सजावट भी अच्छा से करले छे।

ये एक तालाब छै और चारों साइड से बाउंड्री छै और बाउंड्री पर पेड़-पौधा छै और तालाब में ज्यादा मात्रा में पानी छै।